और वह कुर्सी लाल है और यहां पे लाइट भी जल रहा है।

बड़े बड़े घने घने पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पे एक काले रंग की बाइक लगी हुई है और यहां पे एक घर है जो सफेद रंग का है।

और यहा पतले पतले मोटे मोटे सभी पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो देखने में काफी अच्छे हैं।

एक बाइक लगा हुआ हैं जिसमें दो शीशा है और यहां पे एक--

और यहां पे एक इंसान है जो कुछ देख रहा है उसने हल्के ब्लू रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और यहां पे बहुत बरा लाल रंग का घर है।

और यहां पे खिरा है शिमला मिर्च है भिंडी है गाजर है बैंगन है टमाटर है।

है गाजर ऑरेंज कलर की है और यहां पे काफी सारी सब्जियां है जो एक इंसान बेच रहा यहां पे साइड में कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं।

और यहां पे जो बॉक्स है वो सफेद रंग का है और इस बॉक्स में अंद काफी सारा सामान रखा हुआ है और यहा पे गोल गोल --

और यहां पे एक सिलेंडर भी है और एक पीले रंग का बोरा भी है।

यहां पे सर्विस भी लिखा है आ यहां पर बहोत कुछ लिखा हुआ एक--

और यहां पे एक इंसान खड़ा है यहां पे मॉडल जी आर लिखा हुआ है।

ये एक जगह है यहां पे कार्जुन अ कंप्लीट कार सॉल्यूशन लिखा हुआ है।

गमछा लिया हुआ है यहां पे पेड़ पौधे भी बहोत सारे आसपास में लगे हुए है।

लिखा हुआ है।

एक पेड़ लगा हुआ है जो हरे रंग का है और एक घर बना हुआ है जो लाल रंग का है।

सब ये गाड़ी यहां पे सफेद रंगों की यहां पे कुछ बाइक भी लगे हुए हैं जो काले रंग के हैं।

और यहां पे एक दो पेर भी लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं और जो इंसान है वह फोटो ले रहा है।

ये एक जगह है और यहां पे बहोत बड़ा जंगल है यहां पे दूर एक नदी भी है।

सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और क्रीम कलर की जीन ।